पेट्रोल पंप हेय तीन गो चार गो गाड़ी लागल हेय एगो घर लगाई छै एक फॉर्च्यूनर है एगो आदमी एने खड़ा छै एगो मार्बल के दुकान हेय